सामने एक सड़क दिखाई दे रहा है।

दुकान के पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसने सफेद कलर का शर्ट और जींस पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सामने में स्टील के ग्रील लगे हुवे हैं।

सभी के हाथ में ढ़ोल दिखाई दे रहा है।

यह एक गैरेज का चित्र है यहां सामने एक कार रखा हुआ है।

और इसका वैलेट भी खोल दिया गया है।

और बहुत सारे चम्मच दिखाई दे रहे हैं।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

दो गाड़ियों की लग रहे हैं और यह लाइट पीले कलर का दिखाई दे रहा है।

ऐ जो अलग- अलग भगवान की दिखाई दे रहे हैं।

और सामने देवघर भी लिखा हुआ हैं।

सामने ऊपर में एक बल्ब लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे पाईप रखे हुए है।

सामने मे बहुत सारे ज्वेन्टर रखे हुए हैं।

पीछे में एक रेड कलर का बत्ती जला हुआ है।

सामने एक चर्च दिखाई दे रहा है।

बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ सामने बहुत सारी रंग बिरगी चुड़ीया दिखाई दे रही है।

इससे बॉडी बनाए जाते हैं।

इसके साइड में एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

यहां पर गाड़ी को धोया जाता है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं।

सामने में कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में टेस्ट ऑफ देवघर लिखा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे है